एक निम का पेड़ भी है अलग किनारे।

पीछे में रेड कलर की ए-एक स्टेंडिंग पोजीशन पे सामान रखा हुआ है।

और श्री कृष्ण जी के हाथ में बासुरी है।

और उसके ऊपर चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं।

वायर जो लगे हुए है एक अस्त-व्यस्त टाइप के दिख रहे है।

यह महंथ रामशरण दास विशिष्ट पुस्तकालय है।

आगें में छोटी-छोटी झारियां भी हैं।

यह समस्तीपुर का म्यूजियम है।